ये मेरे को लग रहा है कहीं का है पुराना वाला मकान जैसा लग रहा है यहाँ पे छोटा बड़ा बहोत पत्थर टाइप का दिख रहा है और घर में भी कुछ कुछ लिखाया है सफ़ेद में और पेड़-पौधे भी है।